इस सड़क के किनारे काफी बड़े-बड़े बिल्डिंग भी है।

यहाँ पर अनेक सारे बच्चे बच्चियां पढ़ने आते है।

मैदान है यह मैदान काफी बड़ा है।

यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा --

यह गेट काफी आकर्षक --

इस मैदान के किनारे पर काफी बड़े-बड़े बिल्डिंग भी है।